यहा पे दिवार भी दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट है और यहा पे कुछ पोस्टर भी दिखाई दिखाई दे रहे है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है और कुछ खंबे भी दिखाई दे रहे है।

यहांपे एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ कुछ पौंधे फूल भी खिले हुये दिखाई दे रहे है बहुत सारी औरते खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

उपर एक मशाल जलती हुई दिखाई दे रही है एक मकान दिखाई दे रहा है और दिया भी है जिसका कलर व्हाइट है यहा पे लाइट भी दिखाई दे रही है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

दे रहा है एक बॉक्स मे रखा जिसका कलर है यहा पे नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है और दिखाई दे रहा है।

पॉलिथीन भी दिखाई दे रही है एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ पंक्ति भी दिखाई दे रही है।